मे यहाँ पर मल्टी नजर आ रही है जोकि पुराने जमाने का किला है और रेड कलर की कार रखी हुई है। एक आदमी है व्हाइट शर्ट मे।

यह एक शादी का स्टेज है और इसमें काफी सारी लाइटिंग की गयी है और फ्लोर नज़र आ रा है और मस्त गलिचे बिछाये गए हैं।

घर नजर आ रहा है और गेट नजर आ रहा है| टू विलर नजर आ रही है बोर्ड नजर आ रहा है।

टू व्हीलर्स हैं और इस तरफ जो है वो बोर्ड नजर आ रहा है और आसमान नजर आ रहा है। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। कांच दिख रहा है। टू व्हीलर्स हैं।